ये स्कूल है।

गुलदस्ता इधर रखा हुआ है। इधर पानी का फुहारा निकल रहा है। ऊपर लाइट लगा हुआ है। एक बाइक है। एक आदमी खड़ा है।

रॉकेट है फुलझड़ी है बम है है |